दिवार का रंग गुलाबी नज़र आ रहा है दीवार के ऊपर काले खिड़की दिखाई दे रही है खिड़की का रंग काला नजर आ रहा है।

यहाँ एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है बिल्डिंग का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

गमलो के सामने एक दिवार दिखाई दे रही है दिवार का रंग सफ़ेद नज़र आ रहा है दिवार पर दो पोस्टर लगे हुए है एक पोस्टर का रंग--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

बिल्डिंग के सामने तीन झने तीन सदस्य खड़े हुए दिखाई दे रहै है इसका गेट का रंग काला नजर आ रहा है।